पेंट है पिलर है ग्लोबल रखा हुआ है पेन है किताब है बुक है स्टेशनरी है।

साइड में पेड़ है और दूर दूर में भी पेड़ है और उधर घर है।

और पेड़ है पौधा लगा हुआ है फूल का लगा हुआ है।

एक पीला गाड़ी लगा हुआ है बस एक छोटा गाड़ी लगा हुआ है।

उसके सामने एक ब्रिज है उसका एक सामने ब्लू का बोर्ड लगा हुआ है।

शॉपिंग कर रहा है।

एक दो लड़का बैठे हुए है टेबल है टेबल पर बोतल रखा हुआ है कुछ खाने के लिए कपन प्लेट में है।

जिम है जिम में सामान जिम करने वाला रखा हुआ है दस पन्द्रा--

और दो तीन चार लड़के खड़े हैं।

जनरल स्टोर दुकान है उसमें टांगा हुआ है बरस टंगा हुआ है।

लाइब्रेरी है ब्लू कलर का और साइड में दस पंडरा को कुर्सी रखा हुआ है ऊपर सेलिंग फेंन है लाइट जल रहा है।

और काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और इसमें है मरमदूरा ऊपर चढ़ा हुआ है बांधा हुआ है चारों पट से।

पार्क में कुछ टैटू बना हुआ है ग्रिल से घरा हुआ है।

साइड में एक लड़का बैठा हुआ है मोबाइल हाथ में लिए हुए येलो का टीशर्ट पहने हुए हैं।

खलिहान है खलिहान में एक--

और बड़े बहुत सा सामान कपड़े का है।

और झूले पे झूला झूल रहा है।

दस से पन्द्रा गाड़ी खड़े हैं पेट्रोल के लिए--

चेयर पर बैठ के कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है।

एक व्यक्ति पास में इंडिया पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बगल में बैठे हुए हैं।

और उसमें लिखा हुआ है कुछ --

और हो रहा है बच्चा भी है।

और दाएं बाएं पानी है एक छोटा सा नाव है।

एक पार्क है जिसमें सौर्जा--

किनारे किनारे रोड लगा हुआ है।

एक पिंजरा है दस पंडरा को रंग बिरंग होते हैं।

तो क्या है बेडशीट है साइड में लाइट है।

एक बड़ा सा हॉल है उसमें पांच छह सात वो महिला है जो हासन कर रहे हैं।

इधर बुलु कलर पेंट में कुछ लिखा हुआ है एक बुलु का --

रेस्टोरेंट टाइप का है उसमें टेबल बेंच इस लगा हुआ है पर लाइट लगा हुआ है बैलून है।

तीन -चार आदमी बैठे हुए हैं।

रंग-बरंग का बैलून लगा हुआ है।

बैनर में लिखा हुआ ओल्ड बुक सेंटर ।

कुछ सेंटर खुला हुआ है विशिष्ट अग्नि लिखा हुआ है।

एक फील्ड में लेका का खेलने वाला स्लीपिंग है और दाएं बाएं पेड़ पौधा लगा हुआ है।

ढलाई चल रहा है रिंटर बांधा हुआ है।

हरा भरा घास है फील्ड में।

हाइट और दिल बना हुआ है गुलाबी टाइप का।

और गेट के बाहर एक स्कूटर खड़ा है।

रोड किनारे मकान बना हुआ है और उस साइड तीन -चार मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

पोको मोको मोबाइल दूकान है।

एक बिल्डिंग है पीला टाइप का और हरा भी कुछ पेंट किया हुआ है।

एक मॉल है मॉल में कपड़े टंगे हुए हैं।

कस्टमर में कुछ और भी सामान रखा हुआ है उधर सूट रखा हुआ है।

और हौंडा का एक शॉप है टाटा स्काई का शॉप है।

सरपंच गो लड़का लड़की है योगा कर रहा है साइड में जूता खुला हुआ है।

सब्जी बिक रहा है फल बिक रहा है ढेर सारे मार्केट में आदमी है।

तीन -चार गो मिस्ती लगा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर एक काम कर रहा है मोटरसाइकिल को खोल के।

कोकोनट रखा हुआ है सिंपल है।

दुकान है दुकान में गंजी है गंजा है।

और सामान कपड़ा का रखा हुआ है रैक है।

एक दो तीन- चार पांच छह लाइन लगा हुआ है एटीएम --

परिणाम हैके कपडा भी बिछा हुआ है एक पानी का--

पांच-छःगो औरत है और साइड में पेड़ है और करकट अ --

और इधर संकी लिख रहा है।

लाइब्रेरी टाइप का है एक लड़का --

बैठा हुआ है उछा हुआ चेयर है ऐसी लगा हुआ है।